चर्च के ऊपर एक ईशा मसी की ईशु की एक सिम्बॉलिक है चर्च मे दो त्रिभुजाकार--

यह एक पहाड़ से लिया हुआ फोटो के नजारे है जिसमें एक गांव की सभी घरें दिख रही है हम आस पास में पेड़-पौधे भी देख रहे है कुछ बिजली के खंभे--

यह एक चर्च का सभागिरि हैं जिसमें बहुत सारे बैलून्स लगे हुए हैं।

एवम् बोहोत सारे मोमबत्तियाँ भी जल रही है यहाँ कुछ खुर्सिया है दो घड़ी है दो पर्दे है और नीचे में लाल रंग की चटाई लगी हुई हैं मोमबत्ती टेबल पर रखा हुआ है।

यह डेरी एवम डेरी नीड्स का फोटो हैं जिसका नाम रेस्टोरेंट शुभम डेरी एंड डेरी नीड्स नाम हैं इसमें कुछ फ्रीजर्स दिख रहे है एवम--

यह चर्च सफेद रंग से रंगा हुआ है यहाँ एक छोटा सा रोशन दान दिख रहा है।

पम्पलेट लगा हुआ है जिसमें बोहोत सारे छात्रो का फोटो दिख रहा है बिल्डिंग के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है लहर बगल में एक पौधा है उसके आस पास कुछ गमले भी दिख रहे है।

यह एक चर्च है जिस-जिसमे लाल रंग की लाईटे जल रही है।

हर गैराज ऊपर सफेद है नीचे ग्रीन कलर का है यहाँ एक स्कार्पिओ खड़ी है ये--

सामने मे एक पानी दिख रही है पानी के बीच एक छोटा सा टापू है अगल बगल मे कुछ गार्डन की तरह दिख रहा है जिसमे कुछ हरे-भरे पेड़-पौधे दिख रहे है।

यह किसी दुकान का बोर्ड है जिसमें एक चाय की फोटो एवम गूगल मैप का प्वाइंट बना हुआ है जिसमें चेकप्वाइंट लिखा हुआ हैं।

यहाँ विभिन्न प्रकार के खाने की सामग्रियाँ दिख रही है एक--

गैराज टीन का बना हुआ है और एक व्यक्ति दिख रही है यहाँ पानी बिखरा हुआ है जिससे ऐसा लग रहा है की गाड़ी धूल रहा है।